बारिश के बाद सड़क पर यह फोटो खींची गई है।

इस तस्वीर में आम--

आउट के लिए समझाया जा रहा है।

की फोटो है जहां पर कोल्ड ड्रिंक सॉफ्ट ड्रिंक स्नेक्स टेस्टी --

चूल्हा व पंखा अन्य उपकरण मिलते--

को दिखाई दे रहे है।

ट्रेन जाती हुई दिखाई दे रही हैं।

फंक्शन दिखाई दे रहा है।

देख रही है।

बेस्ट पार्लर की दुकान है जहां अच्छे रेट --